दे रहा है लोगो की बाहर स्लिपर फर्श पे दिखाई दे रही है एक पेड़ लगा हुआ दिखायी दे रहा है एक फूल भी नजर आ रहा है।

है वो कोई साब सामान देख रहे हैं इसके पीछे साड़ियाँ राखी हुई दिखाई दे रही है।

दुकान दिखाई दे रही है जिसमें स्टैचू बनी हुई दिखाई दे रही हैं यह स्टैचू कोइ लहंगे कोई फ्रॉक सूट कोई साड़ी पहना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ।

यहां पर लहंगे रखे हुए दिखाई दे रहे है।

आंटी का हाथ दिखाई दे रहा।

आदमी का स्टेचू बना हुआ दिखाई दे रहा है यह आदमी एक गन टाँगे खड़ा हुआ है उसके पीछे कुछ पिक्चर की फोटो लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर एक मंडप दिखाई दे रहा मंडप के अंदर एक सोफा सेट धरा हुआ दिखाई दे रहा है एक पेड़ है दिखाई दे रहा है।

ऊपर पानी की टंकी दिखाई दे रही है उस टंकी पे एक चरु रखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ मकान बने हुए भी दिखाई दे रहे है एक नल नजर आ रहा है उस टंकी में --

बड़े-बड़े खम्बे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यह पे एक कैमरा दिखाई दे रहा है एक मशीन बीच में रखी हुई दिखाई दे रही है उसके नीचे फर्श भी है।

यहाँ पर एक लड़की साड़ी पहनती हुई दिखाई दे रही उसका हाथ सिर्फ दिखाई दे रहा।

बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रहे हैं कुछ खंबे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जिनसे बिजली के तार लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।